और उधर एक बस है और बहुत सारे एल.ई.डी. टॉवर हैं और --

यहाँ पर दिखाए जा रहें हैं कि यह एक उम् आदमी है और इधर एक गेट है।

यहाँ पे दिखाए जा रहें हैं की यह एक कार कि बोनट भैया खोले हुए हैं।